जैसा की देख पा रहे है एक गाड़ी की शोरूम दिखाई दे रही है जिनमे गाड़िया खड़ी दिखाई दे रही है।

तीन से चार आदमी दिखाई दे रहे है बलून लगे हुए दिखाई दे रहे है।

कुछ सामान रखी हुई दिखाई दे रहे है सामान में जैसे की एक चेयर रखी दिखाई दे रही है हेलमेट रखी हुई दिखाई दे रहे है।

बड़े बड़े पेड़ लगे हुए भी दिखाई दे रहे है कुछ पेड़ सूखे दिखाई दे रहे है कुछ हरे दिखाई दे रहे है।

एक चेम्बर दिखाई दे रहा है उस पर बहोत लम्बी लाइन लगी हुई दिखाई दे रहे है औरते आदमी दिखाई दे रहे है।

पंखे लगे हुए दिखाई दे रहै है एलईडी लगी --

रिक्शा दिखाई दे रहा है ठेला दिखाई दे रहा है कार दिखाई दे रही है ऑटो दिखाई दे रही है।

कांच लगी हुए दिखाई दे रहै है एलईडी बहोत सारी लगी दिखाई दे रही है एलईडी वाइट कलर की लगी हुई दिखाई दे रहा है।